यहां पे एक दो कुर्सी लगे हुए हैं जो कि रेड कलर के हैं।

दो लड़कियां दो लड़का यहां पे बहोत सारे खंबे भी गाड़े हुए हैं।

यहां पे तीन प्रकार का बैलून भी है।

जहां पे एक बच्चा मंदिर के अंदर गया है।

यहां पे बहुत सारे घास भी है और ईटा भी बिगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे चॉकलेट भी रखे हुए हैं और यहां पर एक फोन पे का स्कैनर भी है।

जहां पे लकड़ी के मदद से विकेट बनाया हुआ है और एक बेट भी है यहां पे बहोत सारे मिट्टी और आक्कड़ और घास फूस है।

इसके दीवाल पीला और रेड कलर के है यह ग्राउंड में बहुत सारे घास उगे है।

यह एक एयरपोर्ट का दृश्य है जहां पे बहुत सारे घास भीगे हुए हैं और बालू और छर्री भी है।

और उसमें शीशा भी लगा हुआ है और ब्लू रंग से कुछ लिखा हुआ है।

उसके ऊपर दो खिड़की भी है जो की लोहा का है और शीशा लगा हुआ उसमें।

जहां पे एक काउंटर रखा हुआ है।

गड्ढा किया हुआ जिसमें व्हाइट कलर से पेंट हुआ है।

और ब्लैक कलर का डब्बा में कोई चॉकलेट है।

और वाइट कलर से श्री कृष्णा लिखा हुआ है।

यहां पर ऊषा सिंगर लिखा हुआ है।

यह एक ऑफिस का दृश्य है।

यहां पे एक सीट बनाया हुआ है जोकि ब्लैक एंड ब्राऊन कलर के हैं।

दो औरत साड़ी पहनी ऑरेंज कलर का।

और बाउंड्री के ऊपर भी घास फूस है यहां पर बहुत सारे डराम रखे हुए हैं।

यहां पे एक दो बॉक्स भी बांधा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

यह एक फूल दुकान का दृश्य है।

यहां पे बहुत प्रकार का फूल रखा हुआ है।

ऑरेंज पीला और पर्पल कलर का है।

और यहां पे एक पोल है जिसके ऊपर बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे गमले हैं जो कि ग्रीन एंड ब्लैक कलर के हैं।

के_टी_एम लगा हुआ है जोकि व्हाइट कलर के है।

उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का बोतल रखा हुआ है।

कोई कुर्सी पर बैठे हैं और ओ कुर्सी के कलर व्हाइट है।

वो आदमी उसका दाढ़ी बना रहा है।